इस फिगर में श्री नवग्रह शांति जिन मंदिर है।

एस्पेयर में एक लाइफलाइन कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है।

लिखा हुआ है नारायणी होमिओ क्लिनिक --

कुछ व्हाइट बोड़ा भी है और कुछ येलो बोरा में भी रखा हुआ है।

इधर में एक सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया का --